यख मा जी ठोपरा भी छन रख्यां यख भितर एक तराजू दिखेण लग्युं यख भितर कई सारा केला भी छन लटक्यां यखम एक आदमी भी छा दिखेण लग्युं।

तस्वीर का अनुसार यख मा जी एक चाय कू कप करा दिखेण लग्युं यख मा जी यू कप एक लड़का का हाथ पर छ दिखेण लग्युं।

कुछ बच्चा साइड फणा छन बैठ्याँ यख मा जी एक मैडम भी छा यख फण घास दिखेणी यख मा जी कई सारा हरयां भरयां डाला भी छन दिखेणा।

यख मा जी यू गिलास जू छन यू प्लास्टिक का यख पर स्टील का गिलास छन यख मा जी यू पर लोग पानी पींदा छन चाय पींदा छन यख पिछाड़ी एक ड्रम कर छ रखयूं यख पिछाड़ी दीवार मा जी पीलू रंग छ हुयों|